इसके ऊपर सुपर डोनट्स लिखा हुआ है।

यहां पे एक शॉप दिख रही है शॉप में--

बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स दिख रही हैं।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

गाड़ियों का रंग सफेद और काला है।

और यहां पे बहुत सारे वायर्स दिख रही हैं रस्सियां दिख रही हैं।

छत भी दिख रही है लाइट दिख रही है।

और यहां टेबल दिख रहा है टेबल के ऊपर बहोत सारी मेडिसिंस दिख रही है।

लाइट्स दिख रही हैं और बहुत सारे गमले दिख रहे हैं जिनमें छोटे-छोटे प्लांट्स लगे हुए हैं।

और बिजली का खंबा भी दिख रहा है बहुत सारी बिजली के तारें दिख रही हैं रोड दिख रहा है।

यह एक शॉप दिख रही है शॉप में बहोत सारा खाने पीने का सामान दिखाई दे रहा है।

पे मंदिर दिखाई दे रहे है और बहोत सारी लाइट्स दिखाई दे रही है सीढ़ियां भी दिखाई दे रहे हैं और--

आसमान दिखाई दे रहा है आसमान में बदल दिख रहे हैं।

में छोटे छोटे पत्थर रख पड़े हैं।

यहां पे बहोत बड़ी पत्थर की चट्टान दिख रही है।